और ये लोग डॉक्टर का यहाँ पर बंडी वगेरह तौलिया पेशेंट के लिए सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। ये बेड है जिसपे पेशेंट को --